दो ठेले लगे जिन पे दो व्यक्ति खड़े हैं जो संतरे व सेव रख रहे हैं।

और एक पहाड़ है जिसके ऊपर तार दिख रहे है बिजली के और उस साइड भी एक पहाड़ दिख रहा है। और इस साइड एक पेड़ लगा हुआ है उसके पास एक घर भी दिख रहा है।